पीला कलर का गेंदे का फूल दिखाई दे रहा है | इसमें एक पिंक कलर का छोटा सा रोज़ दिखाई दे रहा होगा और ये किसी टोकरी किसी चीज में रखा हुआ है ।

इधर एक केलेंडर दिखाई दे रहा हेगा। यहाँ पर और बहोत सारी सीसी नजर आ रही है। तकिये नज़र आ रहे है। ब्लेक कलर की कुर्सी दिखाई दे रही है। ऊपर हड्डी दिखाई दे रही है। एक मिरर दिखाई दे रहा है।

में हमें हाथी नज़र आ रहा है। हाथी के ऊपर एक जेंट्स खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है जिसने डंडा पकड़ा है हाथ में और बहोत सारे लोग नज़र आ रहे हैं इसमें पानी --

हाथ में चाय का कप पकड़ी हुई हेगी। यहाँ पर बहोत सारी प्रकार की बुक दिखाई दे रही हेंगी।

कर रहा है और चपल रखी हुई दिखाई दे रही है और इसका नाम है मिथिला बुक से --